यह म् समंदर है। समुंदर के पास जहाज है। जहाज को दिखाई दे रहे हैं।

जमीन में के पेड़ खड़े हैं। अ पुताई सफेद रंग की पुताई खंभन पे लाल रंग की पुता --

ये बहुत बड़ों मैदानों है।

मोटरसाइकिलें खड़ी हैं।

नीले गुलाबी लाल बैगनी सब तरह के यहां में फूल हैं। सफेद --